यह एक स्कूल है स्कूल का कलर वाइट एंड रेड है स्कूल के पास ही एक पेड़ लगा हुआ है।

यह एक कपड़ो की दुकान है जिसमें जेंट्स और लेडीज बच्चों सभी के कपड़े मिलते हैं ये कपड़ों की दुकान का रैड एंड व्हाइट कलर में कॉम्बिनेशन है।